जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की नील कलर का है इस में लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है। इस बैंक में नीचे की तरफ एक --

जैसा की अप देख सकते है यहाँ पर जे सी बी से गड्ढा किया जा रहा है और सामने की तरफ छोटे छोटे कुछ माकन बने हुए हैं।

जैसे की आप देख सकते हैं यहाँ पर चंबा पोली क्लिंक है जिसका बोर्ड ऊपर की तरफ लगा हुआ है इसमें मेहरून कलर किया गया है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेडीज हाथ में चा-आटे रखे हुए डिजर्ट रखे हुए है इसके --

इन घांस के मैदान में कहीं-कहीं पीली घांस भी लगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे की तरप चारों तरप बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए--

की आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सोसाइटी है इस सोसाइटी में सारे मकान एक से बने हुए हैं इनमें बहोत बड़ी बड़ी बालकनी बनी हुई है ।

जैसे की आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूल है इस स्कूल के ग्राउंड में बहोत सारे बच्चे वाइट और रेड कलर की ड्रेस पहने खड़े हुए हैं जोकि प्रेयर कर रहे सामने इनके टीचर भी खड़े हुए हैं।

ये आप यहां देख सकते हैं यह पर एक ग्राउंड में वाइट कलर की बस खड़ी हुई है इसके बाज़ू में एक आदमी भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बस के--

कैबिन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस बैंक का ऊपर बोर्ड लगा हुआ है इसके सामने एक डस्टबिन भी रखा हुआ है और सामने दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहोत बड़ा पार्क है इस पार्क में एक बीच में एक छोटा सा हाउस टाइप का बना हुआ है जिसमे के सामने देख सकते हैं --